लग रहा कोई लैब है जो शीशे में बहुत सारे समान रखे गए हैं। पक्षी देखने को मिल रहें हैं जैसे लग रहें हैं कुछ किए हैं। व्हाइट कलर से पेंट किए हुए हैं।

पेड़ पौधे पर्यावरण देखने को मिल रहें हैं। अच्छा नजारा देखने को मिल रहें हैं पर्यावरण की। अच्छे से फोटो को क्लिक किए हुए हैं।